एक दुकान है दुकान में सामने--

काउंटर लगा ओ काउंटर के ठीक बगल में दो-तीन कुर्सियां रखी गई हैं कुर्सियों के बगल में --

यह एक दुकान है दुकान पर चार अ बाहर बोर्ड लगा है बोर्ड पर श्री गार्डमेंट्स लिखा हुआ है अ दुकान की दीवार पर भी--

दीवार पर ऊपर भी लिखा हुआ है अंदर कपड़े की दुकान है यहां रंग रंगे कपड़े हैं यहां पे--

यह एक गुफा है गुफा के अंदर एक व्यक्ति जा रहा है गुफा में--

सड़क है सड़क बहुत साफ सुथरा है सड़क के दोनों तरफ --

शेड लगा हुआ है के बाजू में बिजली का खंभा लगा हुआ है।

सामने एक ग चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है अ अ --

नदी के ऊपर की पुल बनी है पुल के ऊपर --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

बिजली के खंबे ज ल लगाए गए है ब जिसमें बल्ब भी जल रहा है बल्ब रंग-बिरंगी जल रहे है।

चारों तरफ से खुला आसमान है यहां बहुत सारे लेडीज जेंस इकट्ठा हुए हैं।

एक दुकान है दुकान में बहुत सारी रैक है रैक पर कंटेनर रखे गए हैं कंटेनर छोटे-बड़े सभी साइज के हैं।

मम दीवाल का सांचा बनाया जा रहा है।

यह एक रोड यह रोड है रोड अ हरी घास भी है सूखी घास भी है रोड के ठीक सामने घास पूछे बनी हुई --

पौधे लगाए गए यह बगीचा भी हो सकता है।

रोड के किनारे हरी भरी घास है घास के ठीक नीचे नदी है नदी--

एक बोट भी है चारों तरफ से पानी बह रहा है।

पर बगल में मम नदी जाने आने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई सीढ़ी पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं मूर्ति के ऊपर भी --

सड़क के किनारे होटल है होटल बहुत बड़ा है होटल --

होटल न्यू राधा कृष्ण लिखा गया है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई है।

मकान के ठीक सामने फर्श भी है फर्श खाली पड़ा हुआ है।